inkscape उपयोग करके special effects on text पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न बनाना सीखेंगे रिफ्लेक्टेड यानि प्रतिबिंबित टेक्स्ट लेबल्ड टेक्स्ट और टेक्स्ट का केस यानि प्रकार बदलना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu लिनक्स 1204 os
इस शृंखला में पिछले सारे tutorials 0484 में recorded किये all थे
इस tutorial से मैं 091 version में record करुँगी जो नवीनतम stable version है
अब inkscape खोलें पहले हम reflected यानि प्रतिबिंबित text बनाना सीखेंगे
text tool चुनें और शब्द spoken type करें text को bold करें
अब मैं text को zoom करती हूँ जिससे मैं प्रदर्शन स्पष्ट रूप से let सकूँ
अब object menu पर जाएँ और fill and stroke विकल्प चुनें
फिर fill टैब में linear gradient पर click करें
अभी प्रदर्शित की तरह gradient handles पर click करें और gradient रंगों को बदलकर लाल और नीला करें
gradient को ऊर्ध्वाधर रूप से अलाइन करें अतः अब screen पर प्रदर्शित की तरह gradient ऊपर से लाल और नीचे से नीला होना चाहिए
selector tool पर click करें और text को duplicate करने के लिए ctrl + d दबाएं
अब duplicated किये हुए text को flip करने यानि पलटने के लिए keyboard पर v दबाएं
पलटने के लिए हम tool controls bar पर उपलब्ध विकल्प भी उपयोग कर सकते हैं
अब हम duplicated किये हुए text को मूल text के नीचे लायेंगे जिससे की यह mirror image की तरह दिखे
अब gradient tool चुनें और नीचे वाले gradient handle पर click करें
fill and stroke dialog box पर क्लिक करें यहाँ come alpha value को बदलकर 0 करेंगे
हम नीचे वाले handle को भी थोड़ा सा upward की दिशा में लायेंगे
selector tool पर click करें अब opacity को कम करके 80 करें और enter दबाएं
हमारा प्रतिबिंबित text अब पूरा हो गया है इसे बेहतर देखने के लिए थोड़ा सा zoom करें
आगे हम labeled text बनाना सीखेंगे
सबसे पहले हम हरे रंग का एक आयत बनायेंगे चूँकि alpha value zero है यह अभी नही दिखता है
इसे 255 करें और enter दबाएं
अब आयत पर text spoken tutorial type करें
selector tool पर click करें और text के अनुसार आयत का size बदलें
आगे text चुनें अब text को duplicate करने के लिए ctrl + d दबाएं
duplicate text मूल text के बिल्कुल ऊपर है
text का रंग सफ़ेद करें फिर path menu पर जाएँ और object to path विकल्प पर click करें
अब object menu पर click करें और फिर ungroup विकल्प पर click करें
दोबारा path menu पर जाएँ और union विकल्प पर click करें
tool controls bar पर lower selection one step icon पर click करें
एक बार फिर path menu पर जाएँ और इस समय हम linked offset विकल्प पर click करेंगे
उस handle पर click करें जो text पर दिखता है और outline को बड़ा करने के लिए इसे खींचें
selector tool पर click करें फिर text पर click करें और इसे नीचे लाएं
देखें एक अन्य text बनाया गया है text चुनें और इसे डिलीट करें
अब outline भाग को चुनें और nodes tool पर click करें
tool controls bar पर convert selected object to path tool पर click करें
अब आप outline पर nodes देख सकते हैं यहाँ प्रदर्शित की तरह मध्य में अनचाहे nodes चुनें और उन्हें डिलीट करें
दोबारा selector tool पर click करें और text को वापस इसकी tool स्थिति में लाएँ
text का रंग बदलकर हरा करें
outline भाग चुनें और इसे duplicate करने के लिए ctrl + d दबाएं एक बार फिर याद रखें कि duplicate outline मूल के ठीक ऊपर है
रंग को बदलकर काला करें
फिर tool controls bar पर then bar lower selection one step icon पर click करें
अंततः fill and stroke dialog box में opacity को घटाकर 60 करें और blur को बढ़ाकर 7 करें
यह करने के बाद हम label के लिए hanger बनायेंगे
अतः ellipse tool पर click करें फिर ctrl key दबाएं और आयत के ऊपर बायीं तरफ एक वृत्त बनाएं ताकि label पर एक छेद बन जाये
वृत्त को duplicate करने के लिए ctrl + d दबाएं और वृत्त को आयत के दूसरे छोर पर लाएं
आगे bezier tool पर click करें और प्रदर्शित की तरह एक curvy यानि घुमावदार line बनाएं
बनी हुई line एक hanger की तरह दिखनी चाहिए
fill and stroke dialog box पर stroke style में width को बदलकर 5 करें
अब हमारा let किया हुआ text तैयार है अब हम zoom out करते हैं और इसे बेहतर तरह से देखते हैं
आगे सीखते हैं कि inkscape में text के case यानि प्रकार को case बदलते हैं
text tool पर click करें और canvas पर alphabets type करें देखें कि पूरा text lowercase यानि छोटे अक्षरों में है
अब extensions menu पर जाएँ और text named विकल्प और फिर change case पर click करें आपको कुछ विकल्प दिखेंगे
अब मैं uppercase विकल्प पर click करती हूँ देखें कि alphabets का case uppercase में यानि बड़े अक्षरों में बदल गया है
दोबारा text पर click करें extensions menu पर फिर text पर और अंततः change case पर जाएँ
इस समय random case विकल्प चुनें text के case में बदलाव को देखें
आप अन्य विकल्पों की कोशिश अपने आप कर सकते हैं
इसके साथ हम इस tutorial में अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा: प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टेड टेक्स्ट लेबल्ड टेक्स्ट और टेक्स्ट के केस को lowercase से uppercase और randomcase में बदलना
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है सतह पर प्रतिबिंबित text inkscape बनाएं
text inkscape लिखें और text के case को flip case में बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है